ऊपर लाइट लगी हुई है और पंखे लगे हुए है।

साइड में एक रोड जा रहा है जिस पे एक कार खड़ी है।

ऊपर मैमि पोको पैंट्स रखे हैं।

यह एक आधार सेंटर है।

यह एक लैपटॉप की शॉप है जिसमें बहुत सारे लैपटॉप रखे हुए हैं।

यह एक कपड़े की शॉप है जिसमे--

जीसके बालो पर हेयर स्टाइल कर रखा है और उसमें रेड कलर की चिमटी जैसी लगा रखी है।

साइड में एक गाय की मूर्ति है।

और वहां कुछ व्यक्ति नहा रहे हैं और पानी चल रहा है।

यह एक रूम है जिसमें कुछ महिलाएं हैं कुछ व्यक्ति हैं योगा कर रहे हैं।